पूल के पास एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने लोअर टी शर्ट पहन रखा है।

ब्लू कलर के बैनर पे वाइट कलर से करीमनगर डेयरी लिखा हुआ दिख रहा है।

जोकि अलग अलग तरह के अलग अलग रंग के दिखाई दे रहे हैं।

कुछ कपड़े तहे हुए भी रखे हैं जिसके सामने एक आदमी भी खड़ा है।

साइड में एक पौधा टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बेड के ऊपर व्हाइट कलर की बेडशीट चढ़ी हुई है और कुछ तकिये भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

ऊपर की ओर टीन पड़ी हुई है जिसमें कहीं कहीं पर गैप है।

उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक बिल्डिंग पर ब्लू और वाइट कलर का बैनर लगा हुआ है।

सभी बच्चे आर्ट बनाते हुए दिख रहे हैं बीच में एक टीचर खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

नीचे की ओर जो रेड कलर की कॉपी रखी है उन पर भगवान की मूर्तियां बनी हुई है।

इसमें छोटे छोटे से पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सभी पौधे अलग अलग प्रकार के हैं।

बिल्डिंग में बहोत सारी खिड़कियां बनी हुई है कुछ खिड़कियां चौकोर है और कुछ लंबी लंबी खिड़कियां बनी है।

जिसमें ऊपर की ओर चारों तरफ घड़ी लगी हुई हैं।

उन सभी में एक एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बीच में एक बटरफ्लाई बनी हुई है और को ऑप्टक्स लिखा है।

ऊपर की ओर साफ नीला आसमान दिखाई दे रहा है और कुछ मिट्टी पड़ी है।